एक रिड़खी सफ़ेद अर नीला रंग की बि मौजूद छा जैफर लोग रिड़खी खेली थे सिदा पानी मा जी छलांग लगांदा।

दृश्य एक गाड़ी कु छ जेमा जी दिखेण पर यन लगणु कि गाड़ी माँ जि क्वे खराबी एगे।

चित्र मा एक डैम छा दिखायुं डैम एंच-एंच बिटिन लोहा कू च छ बणयुं निस बिटिन वे पर काम जारी छ।

ये दृश्य मा जी कखि मॉल कु सामान छ दिखाऊं जख मा जी एक बहोत ही बड़ु लाखड़ा कु खाँचु छ धर्युं।